यहां पर एक बहुत बड़ा मशीन लगा हुआ है और सामने एक बहुत बड़ा कंटेनर भी है।

यहां पे दो खिड़कियां लगी है जो खुली--

बस का नाम बी_आर एलेवेन पी_सी एट वन सिक्स फाइव हैं।

यह एक दुकान का तस्वीर है सामने लंबी लंबी सीढ़ियां लगी हुई है जो काले रंग की है।

उसके ऊपर काफी दूं लिखा हुआ कुछ बैनर लगा हुआ है।

इस दुकान के सामने कुछ तीन आदमी बैठे हुए --

चार तरह के लाईटें जल रही है।

आस पास कुछ घर भी दिखाई पड़ रहे हैं।

सामने सफेद रंग के बड़े बड़े सोफा ए लगाए गए हैं और उसके पीछे कुर्सियां लगाई गई हैं।

यहां पे नीचे की ओर कार्पेट भी बिछाया--

लाइन से बैठकर भोजन ग्रहण कर रहे है सफेद रंग के पत्तल मे--

काला रंग का कुर्सी लगा हुआ है उसके ऊपर एक टेबल लगा है जो मिट्टी रंग का है।

के बीच में कुछ गोला रखा हुआ है।

बहुत सारी लाल और सफेद लाइटे लगी हुई हैं।

यहां पे दरवाजे के पास बहोत सुंदर सुंदर बैलूंस लगाएंगे हैं और बहोत सारे रंग के बैलूंस लगाए गए हैं।

सामने लाल रंग का रिबन लगा हुआ है।

यहां पे बहुत सारे लोग झील के सामने खड़े होकर झील को निहार रहे हैं।

गमलों का रंग अलग अलग है।

यहां पे दीवारो का रंग पीला है और खिड़की पर परदे लगे हुए--

यह एक मंदिर के सामने का तस्वीर ह--

यहां पे एक आदमी कपड़े के डब्बे को बंद कर रहा है।

यहां पे बहुत सारी मशीने लगी हुई हैं।

कुछ बच्चे बैठे हुए हैं।

सैलून का नाम न्यू ताज हेयर सैलून है।

सामने ने कुछ पौधे लगाए गए हैं जो हरे भरे हैं।